यहां पर बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है। यहां पर बहोत बड़ा--

यह एक बहुत बड़ा एरिया है।

बहोत सारी लाइट भी जलाई गई है।

यहां पर एक बहुत बड़ी दुकान है दुकान में बहो--

लोग शेविंग और हेयर कट करवा रहे हैं।

बहोत सारे घर दिखाई पड़ रहे है और यहां पर--